उसके पीछे हमें नदी बहती हुई दिखाई दे रही है नीचे हमें बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और गार्डन भी दिखाई दे रहे ।

इस फोटो में हमें सामने लाल रंग की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इमारत के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर --

इस फोटो में हमें सामने एक स्टेट बैंक इन ऑफ इंडिया का ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है।

कुछ लड़किया शूट में खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें सामने एक प्रतिमा नजर आ रही है प्रतिमा जो की सफेद रंग की की दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें कुछ लोग लाल और कुछ काली चेयर पे बैठे नजर आ रहे हैं उनके हाथों में हमें कॉपी और पेन दिखाई दे रहे हैं।

सामने हमे जालिया नजर आ रही है रेड कलर की ।

पुतले के ऊपर हमे ऑरेंज रंग का कुर्ता दिखाई दे रहा है।

ताज स्टार रेड कलर वर्डस मे लिखे है दिखाई दे रहा है।

सामने एक छोटा सा मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति येलो शर्ट में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा --

क्रिकेट की पिच दिखाई रही है जिस पर लाल कलर के स्टंप लगे हुए दिखाई दे रहे है।

पौधे दिखाई दे रहे हैं |

अंदर भगवान दिखाई दे रहे है ऊपर और --

नीचे हमें कुछ आने-जाने के लिए दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।